मुझे इस चित्र में एक दुकान नजर आ रही है उस दुकान में--

दीवाल पर लिखा है मेहंदी--

मुझे इस चित्र में एक पिकनिक स्पॉट नजर आ रहा है उस पिकनिक स्पॉट पर--

मुझे इस चित्र में एक शोरूम नजर आ रहा है।

यह पूजा छठ पूजा हो रही हैं।

उस दुकान में पानी की बोटल कोल्ड्रिंक्स पेम्पर के पाउच --

मुझे इस चित्र में एक शोरूम नजर आ रहा है उस शोरूम में एक लंबा सोफा रखा हुआ है।

उसे दुकान के अंदर वुडन के दरवाजे बने हुए हैं।

मुझे इस चित्र में एक दुकान नजर आ रहा है उस दुकान में बिकने वाली चीजें--

उसे नर्सरी में बहोत अलग अलग प्रकार के फूल नजर आ रहे हैं।

उस बिल्डिंग के बाहर रूद्राक्ष इन लिखा हुआ है।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

मुझे इस चित्र में एक एयरपोर्ट नजर आ रहा है।

मुझे इस चित्र में एक सैलून शॉप नजर आ रही है।

उस सैलून शॉप में दो कस्टमर अपनी दाढ़ी बनवा रहे हैं।